--और काफी पेड़ गमले अमले भी लगाए हुए है बहुत सुंदर लग रहा है स्टैचू देखने मैं लंबा सा बड़ा सा--